एक खिड़की दिखाई दे रही है और एक बेड एक और एक लकड़े की क्या बोलते हैं टेबल है ए जो दिखाई दे रही है एक बेड दिखाई दे रहा है।

और यहाँ से थोड़े सी दूर देखने पर एक पवन चक्की दिखाई देगी जो कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक खम्बा भी दिखाई दे रहा है जिसके पास बहुत सारे तार ही तार --

दोस्तों आपको पता है की यहाँ पे कितनी बहुत सारी मछलियां हैं।

दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते है कि इसके अंदर देखो इस फोटो के अंदर एक कितनी अच्छी तस्वीर दिखाई गई है इसके अंदर यह कोई मंदिर दिखाया गया है इसस--

और यहां पे बहुत से भक्त जन इसकी यात्रा करने के लिए आए है।

ऐसे कटिंग तो अपने ओ और होनी चाहिए भाईजी वाह यार क्या कटिंग कराई है आपने यार ओ मस्त --

और आस-पास में कई एक ऐसा पीछे कोई एक मकान दिखाई दे रहा है और कुछ यहाँ पे पेड़-पौधे हैं वो दिखाई दे --